लाइट का बहुत अच्छा प्रबंध किया जा रहा है यहां पे बहुत अच्छी--

यह कुछ कह रहा है ऐसे ये हाथ भी एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे कर रहा है।

यहां पे आदमी भी है और यहां पे--

और यहां पे आप देख सकते हो खाना भी लग रहा है।

ये आप देख सकते हो यहां पे पिज़्ज़ा में लिखा हुआ है यहां पे गाड़ियां खड़ी हुई है बाइक खड़ी हुई है।

यहां पे ये आदमी है ये औरत है ये गाड़ी में बाइक पर बैठी हुई है और यहां पे आप देख सकते हो--

ऑटो भाई है ये ऑटो पे चि चिल्ला रही पीछे आगे से ऑटो चल रही है पीछे ये आदमी बैठा हुआ है।

लिखा हुआ है और यहां पे ये पार्क सा है ये यहां पे--

ये यहां पे स्कूल है स्कूल में ये प्रेयर के लिए हाथ जोड़े खड़ी हैं।

बहुत अच्छी दिख रही है लेकिन ये गाड़ी थोड़ी इनसे छोटी है।

देख सकते हो यहां पे यहां पे चॉकलेट बिस्कुट भी रखे हुए हैं।

ये यहां पे बच्चे बैठे हुए हैं इनके टीचर इनको सिखा रहे हैं।

यहां पे आप देख सकते हो पेट्रोल पंप भी है यहां पे बहुत अच्छा दिख रहा है यहां पे ये जो गाड़ियां खड़ी हैं ये गाड़ियां यहां से पेट्रोल पंप डलाएंगी --

ये यहां पे जिम है यहां पे डंबल रखे हुए हैं।